यह किसी सेलिब्रेशन का सीन है।

यहां एक सितारा जैसा फूल है।

यहां पे बहुत सारा जिम का इक्विपमेंट है।

कई सारे पेड़ पौधे हैं पहाड़ हैं।

इसमें दो महिला टीचर है।

काफी महिलाएं पीछे बैठकर सुन रही हैं।

और टेबल के आगे एक टीन की फोटो है।

यहां पे कुछ लोग दर्शन के लिए आए हैं।

काफी सारी कुर्सियां लगी हैं जो कि खाली हैं और एक टेबल है वो भी खाली--

ये किसी पहाड़ का सीन है जहां पे एक सड़क है।

यहां बच्चे कागज से कुछ बना रहे हैं।

यह एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है।

दो नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान में दो टेबल्स है।

और कुछ रिक्शे दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी कपड़े की दुकान की फोटो है।